वहां पे एक बस स्टैंड है बस स्टैंड में एक बस ठहरी हुई है एक आदमी जा रहा है जो यहां पे --

और यहां पे उजाला हो रहा है लाइटिंग चालू है यहां पे फायर --